पावर हाउस भी है। यहाँ पर बहोत दूर-दूर के लोग आते हैं यहाँ पे । स्नान करते हैं। स्नान करके पूजा पाठ करके और अपना --

पूर्व मध्य रेलवे का है। यहाँ पे कार स्टेशन भी है कार शेड भी है। यहाँ पे लोग रेलवे करमचारी लोग आके विश्राम करते हैं। अपना --

मतलब पुराने रीति रिवाजों के अनुसार यहाँ पे सब पंडित लोग जुटे हैं और भी लोग कन्या कुनारी सब लोग जुटे हुए है। पंडित लोग भी हैं पूजा पाठ करा रहे हैं अपना को खिला रहे हैं बना के।

बर्फीला मछली का मतलब देखने को मिल रहा है। मछली का मतलब दुकान है यहाँ।

बहुत से लोग आते हैं। गाडी पकड़ कर जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं --

देखिये भाई साहब बनारस फूल भंडार लिखवाये हुए हैं जो बनारस --

ये भी एक मछली है।